दुकान के बाहर एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पर श्री हिंगलाज बुक डिपो लिखा है।

यहां पर एक स्टेचू बना है जो गोल्डन कलर का है।

आसपास पेड़ है यहां पे बेंच पड़ी हुई हैं।

यहां पे कुछ कपड़े पॉलिथीन में रखे हुए हैं।

यहां पर गिट्टी लगी हुई है जो काले रंग की है।